ऊपर भी शेल्वस बने हुए हैं जिसमें प्रोडक्ट्स बने हुए हैं साइड में हैंडवाश बेसिन हैं मोबाइल चार्ज हो रहा है और दीवार व्हाइट की और पिंक कलर से डेकोरेटेड है।

दिखवा हुइ पिक्चर मे हमे एक महल कि दिवाल को दिखाया गया है महल कि दिवाल ठीक साइड मे बहोत सारी शोप बनी हुइ है जो की बन्द है।